यहाँ कम्पटीशन बच्चों में हो रहा है और एक-दुसरे अपने --

इसमें जमा किये जाते हैं ताकि कठिन परस्थितियों में पैसा अपना निकाल सकते हैं ।

यह पक्का मकान की ढलाई के लिए --

यह एक पार्क है जो कि यह शुद्ध वातावरण एवं चारो ओर हरी-भरी --